सी_ई_ए_टी लिखा हुआ है।

फूल दिख रहे हैं और ये आदमी भी दिख रहे हैं ये यहां--

जो है और यहां पे ये--

ये यहां पे देख सकते हो श्री साईं--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

रखी हुई है इनववेटर रखे हुए हैं यहां पे।

ये यहां पे देख सकते हो ये घर दिख रहा है।

का कलर रेड है ग्रीन है ब्लू हैं और येलो है और यहां पे ये --

पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं और यहां पे आप देख सकते हो--